पीछे घर बना हुआ येलो कलर किया हुआ है घर के पीछे--

कुर्सी के ऊपर बैठा है डॉक्टर पीछे एक आदमी खड़ा है हाथ में पर्ची ली हुई है दो आदमी बैठे है।

ई फोटो के अंदर-बाहर की साइड तीन आदमी बैठे है यहां सफेद कलर की बेंच लगी हुई है।

और कुछ पैकेट पड़े हैं एक चार्जीर पिन पड़ी है।

हमारे सामने घर बना हुआ है घर के दरवाजे दिखाई दे रहा है दरवाजे खिड़कीया लगी हुई है सफेद --

पीछे घर बने हुए हैं घरों के आगे पेड़ पौधे लगे हुए है ग्राउंड में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं घास ल --

दीवार के ऊपर गोल गोल सर्कल बने हुए है दीवार के ऊपर सफेद कलर किया हुआ है दीवारों के बीच में एक --

और दीवार के अंदर के साइड एक दीवार लगी--

ये महात्मा गांधी की चित्र बने हुई है।

अंदर की साइड बहुत सारी मोटरसाइकिल छोड़ी हुई है और लाइट वाला मीटर लगा हुआ है पेड़ लगा हुआ है बहुत ही बड़ा --

बहोत सारा पानी है इसके अंदर यहां पर बहोत सारी महिलाएं हैं।

लाल कलर की टोपी है चॉकलेट है।

और दरवाजे के बाहर स्कूटी खड़ी है ब्लैक कलर की।

इस फोटो के अंदर बहोत सारे कैरेट पड़े हैं कुछ आसमानी कलर हैं कुछ पीले कलर के हैं कुछ केसरिया कलर के है।

इस रूम के अंदर ऊपर पंखे लगे हुए हैं दीवार पंखे लाइटें लगी हुई है दीवारों के ऊपर तस्वीरें चिपकाई हुई है।

पीछे कॉर्नर मे एक आदमी खड़ा है आदमी के आगे सफेद कलर के बेग बैंच पड़ी है कॉर्नर मे --